यहाँ पर बहुत से आदमी घुमने के लिए आते हैं ।

सड़क है यह सड़क पर बहुत सारे आदमी यहाँ पर चटाई बिछा करके यहाँ पर बैठ कर --

एवं बहुत सारे घासे भी लगी है बहुत सारे कचरा है यह ग्राउंड के किनारे बहुत सारे एलवेस्टर के घर बने गए हैं।

इस यह पिलर को सीमेंट के मसाला बना करके इसमें दिए जायेगे।